झोपरी पर लाल टाइल्स की छत है।

यह एक बड़ी मशीन का हिस्सा है।

यह तस्वीर एक दुकान की है।

सभी फ्रिज अलग रंगों में है।

बीच में हरी चटनी रखी है।

एल्यूमिनियम फॉइल से सजावट की गई है।

कुछ पेड़ो की पत्तियाँ झड़ चुकी है।

चारों तरफ हरियाली फैली हुई है।

यह एक दुकान का अंदर का दृश्य है।

मैदान के चारों ओर पेड़ हैं।

झोपड़िया घास और लकड़ी से बनी है।

हर पंक्ति में गोभी दिख रही है।

दीवार पर लाइटें जल रही हैं।

बच्चे इस मैदान में फुटबॉल खेल रहे हैं।

यह एक साफ और सुंदर भवन है।

भवन के चारों तरफ हरियाली है।

घास वाला मैदान भवन के पास है।

दीवारों पर मार्शल आर्ट पोस्टर लगे हैं।

यह एक स्टेशनरी की दुकान लगती है।

पीछे बहोत सारी किताबें रखी हैं।

कुर्सी पर सफेद तोलिया डाला है।

यहां पर ग्रेनाइट की सिलाए रखी है।

कुछ चप्पल भी लटकी हुई है।

तस्वीर में एक खेत दिख रहा है।

आसमान हल्का धुंधला सा दिखता है।

अमरुद पेड़ की टहनी से जुड़ा है।

लोग परंपरिक कपड़े पहन कर बैंड बाजा बजा रहे हैं।

सबके हाथों में वाद्य यंत्र है।

यह कोई त्यौहार या जुलूस लग रहा है।

यह एक हरा भरा पार्क है।

कुछ लोग बस में चढ़ रहे हैं।

सबके हाथों में बेग और सामान है।

दुकान का नाम शुभम आलू स्टोर है।